यहाँ हम शादी में जा सकते हैं अंदर घुस सकते हैं देखने में बोहोत ही अच्छा लगता है आओ यहाँ गाड़ी वगैरह लगल रहते हैं तो हम लोग को मनपसंद चीज देखने को मिलते हैं